यह एक स्कूल है और यह बहुत ही गंदे तरीके से साइकिल और मोटरसाइकिल को पार्क किया गया है एक लाइन में नहीं लगाया गया है।

और यहाँ एक कोलेज है जिसके गेट के बगल से बहुत सारी स्कूटी पार्क की हुई हैं बहुत ही नेक और एक ही लाइन में ये बहुत ही अच्छा काम है।

यह किसी के घर के बाहरडॉक्टर शम्भुनाथ सिंह शोध संस्थान लिखा हुआ है | और उसके बाहर एक रेड कलर की मोटरसाइकल और एक हीरो हौंडा स्प्लेडर खड़ी हुई है।

ये सुपर कम्प्यूटिंग सेंटर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं जिसके बाहर एक शटर लगा हुआ हैं और शटर पे एक ताला लटका हुआ हैं।

और उसके बाहर एक चारो तरफ से बना हुआ है जिस पे हमारा झंडा फहरा रहा है।

यह हिसलेरियं रेस्टोरेंट है जो बाहर से देखने में काफी सुन्दर लग रहा और इसके बाहर छह गमलें रखे हुए हैं जिन्होंने अलग-अलग पौधे लगे हुए हैं।

ये नदी के किनारे बहुत सी सीढ़ियां बनी हुई हैं।

यह एक घर है। जहाॅं दो कुर्सियां और एक सोफा पड़ा हुआ हैं। यहाँ पर कोई नही बैठा है और यह तीनो खाली हैं।